और सीढ़ी जा रही है जिसका व्हाइट रेड है। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। कच्ची जमीन है और पत्ते फैले हुए हैं सूखे सूखे।

इस इमेज में एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई जा रही है।

बस छोटे छोटे कुछ पेड़ पौधे लगे हैं। आ नीचे हरी भरी हरियाली है नीचे जमीन में।

उसके जिसके बाद चैनल लगा हुआ है।

यहां पर एक आदमी बाल कटा रहा है। एक आदमी फोन चला रहा है। एक आदमी बाल काट रहा है।

इस इमेज में एक स्कूल की में नजर आ रही है जो काफी बड़ा स्कूल बना हुआ है।

औ यहां पर काफी गाड़ियां है यहां पर काफी सारे लोग चलके चलते हुए जा--

ऊपर उसके टीन है दोपहर का मौसम है यहां पे एक लाइड लगी हुई है।

पीछे अलमारी इसके अंदर बुके रखी हैं।

ऊपर का फ्लोर रंगा नहीं गया। नीचे आ नीचे का फ्लोर --

येलो एंड रेड कलर में रंग दिया गया है। यहां पे सीढ़ी जा रही रेड कलर की और बाहर गेट लगा हुआ जो ब्लैक कलर का है।

और पीछे इसके वुडन डिजाइन में वॉल है।

कुछ वर्कर अपना काम कर रहे हैं यहां पर एक आदमी है जिसके हाथ में पेपर है।

और पीछे कुछ लेबर मजदूर काम कर रहे हैं। यहां पर ऊपर काफी हरी भरी हरियाली है। पीछे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और पीछे कुछ बाइक रखी हुई हैं।

कुछ लोगों की चप्पलें हैं यहां पर जमीन थोड़ी गीली है फिर डंडा लगा लगा हुआ है।

जिस दृश्य में करेला होटल केरला होटल है।

को लाइटें भी पड़ी इसकी इसका फ्लोर --

जिसके ऊपर ऑरेंज लाइन में लिखा हुआ है।

इसका कलर ये लाइट येलो है।

बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुएं हैं नीचे कुछ ग ग्राउंड बन जो जिसपे घास उगी पड़ी है।

इस बिल्डिंग के पीछे और भी दिख रही है बिल्डिंगे जिनका कलर व्हाइट --

तार खंबे जा रहे इनके ऊपर इसके ऊपर रूफ पे और एक ही लाइट जल रही है।

इस इमेज में पार्क की इमेज दिखाई जा रही है।

ग्राउंड में घास उगी हुई है और पीछे एक दीवाल खड़ी है जो ऑरेंज कलर की है।

मारुति सुजुकी अरेना का शोरूम दिखाया गया है।

ये दोपहर का मौसम है पीछे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पे डिवाइडर है बीच में और ऊपर कुछ झाड़ियां और पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

इस इमेज में एक सरकारी बिल्डिंग नजर आ रही है।

और फिर एक काउंटर है जिनके अंदर केक रखे हुए हैं।

यहां पे टी_वी स्क्रीन और मेनू कार्ड रखा हुआ है एक आदमी खड़ा हुआ है यहां पे--

बरफ की इमेज दिखाई दे रही है यहां पे स्नो फॉल हुआ पड़ा है।

यहां पे सूखे सूखे पेड़ लगे हुए है पीछे कोई एक बड़ा खंबा जा रहा है।

मे खंभा लगा है उपर से तारे जा रही हैं अ घर बना है एखे टंकी रखी हुई है।

इस इमेज में बाहर साइड का एरिया दिखाया गया है जहां पर पीछे दो बड़ी बड़ी बसे रखी हुई यहां पे सामने पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई है लंबी सी।

इस इमेज में एक कैफे की इमेज दिखाई जा रही जिस कैफे का नाम रॉयल कैफे है।

व्हाइट कलर का है। थोड़ा डिजाइन है। ऊपर रुफ व्हाइट कलर का है।

ठेला है जिसके ऊपर एक आदमी फुल बेच रहा है।

गेट लगा हुआ है और ऊपर लिखा है आपका स्वागत कर आपका स्वागत करते हैं लिखा है।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

पीछे एक टीन का बो बोर्ड और लगा हुआ है यहां टाइल्स वाली रोड बनी हुई है।

जो एंट्रेंस का गेट गोल्डेन कलर का है।

साइड में लिखा हुआ है ऑल इंडिया रेडियो ।

अंदर कुछ पेड़ पौधे लगे हुए है और तारे जा रही उपर--

और कुछ लोग बैठे हुए हैं एक आदमी कुछ लिए खड़ा हुआ है ऊपर ए_सी लगी है ऊपर लाइट भी है।

नीचे से कारपेट बिछा हुआ जिसका कलर रेड एंड ब्लू है।

पीछे कुछ जिम यहां पर जिम अंदर जिम के अंदर एक फोटो है।

और यहां पे काफी ज्यादा सामान रखा हुआ है।

लंबी लंबी करके चटाई बिछी हुई है और पीछे एक कूलर लगा हुआ है।

कच्ची जमीन है ऊपर से तारे जा रही हैं पीछे कुछ ग्रीन कलर टेंट लगा हुआ है।

यहां पे एक ए_टी_एम है एस_बी_आई बैंक का यहां पे एक इसकी एंट्रेंस है।